परक है। पार्क के अंदर --

सिनेमा का आनंद ले रही हैं। यह एक सिनेमा हॉल है। यह सिनेमा हॉल का गेट है जो कि अभी बंद दिखाई दे रहा है।

प्राथना इलेक्टिव के नाम से एक बिल्डिंग की है। इस बिल्डिंग के बाहर --

पोस्ट ऑफिस के बाहर रेलिंग लगी हुई है ।

पेट्रोल पंप का है पेट्रोल पंप के अंदर मशीन लगा दिखाई दे रही है यह दोपहर के समय का फोटो है |

यह तस्वीर हमारे सामने एक --

स्कूल की है स्कूल में बच्चे पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।

यहाँ पर एक डॉलफिन को एक रेडी के ऊपर लेटाकर --

यह दृश्य हमारे सामने एक --